ये तस्वीर एक केफे की है। जो केफे एक पारखी देखने पर काफी सुन्दर दिखाई देता है। इसपे बेठने वाला जो चेयर है --

यह तस्वीर एक केफे की है ये केफे बहुत जगह होता है जहाँ पर लोग आते हैं बेठते हैं तथा --

ये ग्रामीण इलाके हैं। काफ़ी बकरियां चल रही है आस-पास और कुछ लोग भी है।

यह तस्वीर मजदूरों की है। मजदूर एक बिल्डिंग की बनावट का काम कर रहे हैं। इस तस्वीर --